दो कलरफुल सी बेड शीट रखी हुई है।

हरे-हरे पेड़ हैं।

एक मंडप बनाया गया है जिसको सफ़ेद और गुलाबी कलर के पर्दों से सजाया गया है।

कांच की खिडकिया लगाई गई है यहां जिससे बाहर हरे-हरे पेड़ दिख रहे हैं और नीला आसमान दिख रहा है।

फर्श में काले कलर का मैट बिछा हुआ है।

कुर्सी के पीछे लकड़ी का दरवाजा है और कुर्सी के बगल में और भी फर्नीचर रखे हुए हैं।

जो मशीनें रखी हुई हैं उसमें चलते हैं और ऊपर हम टाइमर भी सेट कर सकते हैं।

सफ़ेद कलर का चुना किया गया है।

बहूत सारी खिड़कियां हैं लकड़ी के गेट लगे हुए हैं और बगल में दो कमरे बनाये गए हैं जो की शौचालय है |